आर पेंट से कलर किया गया है।

आंवर भी देख रहे हैं।

और तार वायरिंग किया हुआ है।

और नदी है इसमें थोड़ा बहुत पानी है।

तार भी ल घिंची हुई है।

भड़कीला जैसा बना हुआ हैं।

ऊपर एवं व्हाइट कलर किया गया है।

ये घर का चित्र है।

शेटर भी है येलो और कैथ कलर की कलर किया गया है।

यहां चारों तरफ से जंगल पहार है।

नीचे में ट्रेन चलती हैं।

यहां पर ढेर सारे आदमी है।